वेस्टर्न दिख रही हैं मुझे इस चित्र में सफेद कलर के गुब्बारे लगे हुए दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में होटल का नाम होटल हाईवे लिखा हुआ दिख हुआ रहा है।

मुझे इस चित्र में फ्रंट लिखा हुआ नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक बार--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

मुझे इस चित्र में तीन पुरुष दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक शो होता दिख रहा है। मुझे इस चित्र में एक गिटार दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में दो आदमी दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में बिसलेरी की पानी की बॉटल दिख रही है।

मुझे इस चित्र में कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।